इसके बगल मे एक बहुत बड़ा इमारत है किसी ऑफिस का गेट हैगांव में या शहरो में इस तरह के सड़को पर अक्सर गाय भैंस चरते दिखाई देते हैं लोग आते-जाते रहते है सड़क पिच है कोई नेशनल हाईवे का रोड है।

यह एक चार चक्के की मारूति कार है जो बिहार नंबर का है ये गाड़ी प्लेट चार घर के बाहर है बीच सड़क पर खड़ी है।

हरा-भरा और इसके पीछे में पेड़ भी है बच्चो का लंच टाइम है और खेलने की घंटी और उसमे बच्चे काफी खुशी से खेल कूद रहे है।

ये एक खूबसूरत पहाड़ का दृश्य है जहाँ ऊंचा-ऊंचा पहाड़ दिखा रहा हैं जिसको बादल आकर छू रहा है।

बगल में लाइटिंग की व्यवस्था है दशहरा के दिनों में ऐसा नौ दिनों तक नवरात्रि में पूजा-पाठ होता है यह पूजा बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है।

पोज दे रहा है ये लड़का लगता है खेतों में घूमने के लिए आया है बहुत कुछ दिखाई दे रहा है।

यह जमुनिया बाजार में एक बाजार में परदीप पान एंड कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान है जिसके बोर्ड पर हमारे यहां हरा पत्ता सफेद पत्ता हर तरह के पान का पत्ता --

मिलता है सामने कुछ चॉकलेट बिस्कुट चिप्स नमकीन दिखाई दे रहा हैं। गांव और शहर में छोटे बाजार में अक्सर हर चीज का जनरल स्टोर का सामान मिलता हैं।

स्कूटी खड़ी है बहुत अच्छा यहां पे शोरूम है घर के बाहर यह --

यह एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जिसमें लाल हरा रंग डिजाइन डिजाइन के कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ ढांचा भी बना हुआ है हरा-भरा घास दिखाई दे रहा है घास को अच्छे से कटिंग किया गया है पार्क को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है।